जहां देखा जाए तो पांच लाइट जल रही हैं जो वॉल लाइट हैं।

यह कोई वर्कशॉप की डब्बी की दुकान लग रही है जिसमें की--

जो बहोत ही अच्छे-अच्छे क्वालिटी के दिख रहे और कमोड भी बहोत अच्छे-अच्छे क्वालिटी के दिख रहे हैं।

यहां पे देखा जाए तो ब अ बहोत सारे टायर लगे हुए हैं एक आदमी बैठा है।

क्योंकि इर्द गिर्द बहोत सारे--

और देखा जाए तो वहां पे मिष्ठान वगैरा भी रखाए हुए है।